और काफी ज्यादा जो है महिलाएं काफी ज्यादा दिख रही हैं काफी कम है।

गाड़ी जो का है पुरानी से लग रही है लगता है कि एक्सीडेंट हो चुका है गाड़ी का और काफी जादा जो है डैमेज है गाड़ी।

यह एक दुकान लग रही है अमूल करके दूध वगैरह मिलता है यहां पे ब्रेड भी रखी हुई है काफी।

ये कोई लग रही हैं के एक साइड में जाती हुई लग रही है।

और लैट्रिन साफ करने के लिए ब्रश हो गया लैट्रिन साफ करने का बाकि और भी चीज़े

आर_आर_आई दुर्गा एवं काली पुत्र शैली मंदिर है।

बीच में एक छोटा सा रास्ता है।